ये देखिए ये जो स्टैचू बना हुआ है आप देख सकते है ये स्टैचू कोइ जो गाँधी जी का स्टैचू है जोकि कहाँ छत्तीसगढ़ में बना हुआ है आप देख सकते हैं।

और ये देखिए जो है जो उसका पैर है फेकचर वगैरा हो गया है जिसे वो करते हुए नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पे--

ये देखिए ये जो हमको दिख रहा है जो कि ये स्टोर रूम जहाँ पे स्टोर मे देखो काफी सारे वाइरिंग वगैरा और काफी समान रखा हुआ है जो कि ये इलेक्ट्रिकल मोटर्स वगैरा का है।

ये ट्रॉफिक के ट्रॉफिक में काफी गाड़ियाँ खड़ी हुई है पार्क --

ये देखिए जो हमको दिख रहा है ये देखिए जो रोड का नजारा है मेंन रोड मे ये दुकान वगैरा सीमेंट की और ये देखिए मेन गेट अंदर जाने के लिए --

ये दुकान बाल हेयर कटिंग वाली आप देख सकते हो जहाँ पे लोग कटिंग वगैरह कराते हैं।

स्टेट बैंक का एटीएम देखिए--

काफी लोग नजर आ रहै है घूमते हुए देखिए ये क्रिश्चियान लोगों का है।

ये देखिए ये यहाँ का कार सेंटर यहाँ पर ये देखो कार सर्विस हो रही है आप देख सकते है काफी अच्छा नजारा है जिसे आप देख रहे हैं और ये देखिए--